और बड़े बड़े पेड़ है।

और कुत्ते के खाने वाले बहौत सारे प्रोटींस --

कूल में बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं और--

सामने एक गिटार टंगा हुआ है जिसका रंग काला है और यहां पे गिटार की तारें भी मिल --

बीच में उतरता है यह एक रेलवे स्टेशन के सामने का दृश्य है।

और ट्रक सफेद रंग का है।

इस बिल्डिंग का गेट शीशे का बना हुआ है।

जैसे कि ट्रक बाइक कार और--

जो टिमटिमा के जल रहे हैं फोटो थोड़ी धुंधली है।

यह एक भोजनालय का तस्वीर है।

चबूतरे का रंग सफेद है चबूतरे पर चहगने के लिए।

फैन लगा हुआ है ऊपर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं कुछ व्यक्ति बैठ के फादर को देख रहे हैं फादर --

स्टेज पर खड़े होके स्पीच दे रहे हैं आसपास बहोत सारे ड्रम रखे हुए--

और सभी लोग कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हुए--

यहां पे कैलाश पर्वत बनाया गया है।

कुछ काले काले धब्बे भी पड़ चुके हैं।

बगल में एक बहुत लंबा पेड़ भी है।

यह एक स्कूल ड्रेस पहने हुए लड़के का तस्वीर है जो एक बच्चे के साथ खिंचवा रहा है पीछे सीसा लगा हुआ है।